गेट के आमने सामने जंगली भैंस और गैड़ा का मूर्ति बना हुआ है।

गेट के अंदर एक घर और वृक्ष दिखाई दे रहा है।

दुकान का सीलिंग का रंग सफेद है।

गेट के सामने कुछ लोग खड़े हैं।

गेट के दाहिनी तरफ एक टोटो खड़ा हुआ है।

मॉल के अंदर कुछ लोग खरीदारी कर रहे हैं।

यह चित्र सांझ के समय का है।

चित्र में सूर्य डूबने की स्थिति में है।

चित्र में पांच मोटरसाइकिल है।

फर्श पर रखा गया है कूलर को।

यह चित्र हार्डवेयर दुकान का है।

आसमान में बादल छाया हुआ है।

गाय का रंग सफेद है।

यह एक पूजा का मंडप है।

यह चित्र चाय बगान फैक्ट्री का है।

फैक्ट्री का एक खुटा हरा रंग में रंगा हुआ है।

फूलों से सजाया हुआ है।

यह किसी स्कूल का चित्र है।

बच्चों के साथ कई स्कूल शिक्षिका भी खड़ी हैं।

पीछे की तरफ एक पेड़ है।

दोनों भैंस पानी में हैं।

आस पास कुछ भी नहीं है।

यह एक पोस्ट बाक्स का चित्र है।

के दाहिने तरफ ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं।

यह चित्र किसी किताब दुकान की है।

देखने से लगता है नया नया खोला गया है।

चित्र में तीन लोग सुधा पार्लर दुकान में खड़े हैं।

बोर्ड में मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है।

स्टोर के बाहर बरामदे में एक प्लास्टिक का मेज है।

स्टोर के सामने एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल खड़ा है।

यह चित्र ट्यूशन पढ़ रहे बच्चों का है।

चित्र में तीन से चार लोग हैं और एक हेलमेट भी रखा हुआ है।

चित्र किसी होटल का प्रतीत हो रहा है।